साइड ही में कुछ बजरियाँ भी पड़ी हुई नजर आ रही है।

सामने की ओर एक कार भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

जो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हमें सामने की ओर एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

मकान के पास एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

जिसमे सामने की ओर हमे कुछ झूले नजर आ रहे है।

टेबल पर नैपकिंस भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर कुछ लाइटिंग्स भी नजर आ रही है।

पास ही में एक सीढी भी नजर आ रही है।

इस फोटो में हमें सामने की ओर एक दुकान नजर आ रही है।

यह फोटो किसी कार शोरूम से लिया गया है।

साथ ही में लाइटिंग का भी सिस्टम किया गया है।

जिसने सफेद रंग की टी शर्ट और ब्ल्यू कलर की जींस पहनी हुई है।

दीवार पर एक ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है।

बाहर की साइड एक सरकारी नलका भी लगा हुआ है।

तथा इस अस्पताल का गेट कांच से बना हुआ ह--

अलग अलग बॉक्सो में बहुत सारे खिलौने रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हमें छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही है।

मंदिर के चारों तरफ छोटा छोटा हरा हरा घास और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पीछे की साइड गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है।

यहां पर लाइटिंग के लिए कुछ बलप भी लगाए गए हैं।

इस फोटो में हमें सामने की और एक ड्रोन का डब्बा रखा हुआ नजर आ रहा है।